पिंक कलर दिख रहा है बादल में बाउंड्री उठी हुई दिख रही हैग्रिल ब्लैक कलर की दिख रही है गेट दिख रहे हैं तारा --

बिल्डिंग दिख रही है मंदिर बना हुआ दिख रहा है पीले कलर का झंडिया लगी हुई दिखाई कत्थई वाइट कलर दिख रहा है।

एक लड़की बैठी हुई दिख रही है चेयर पे वाइट कलर की जुते दिख रहे हैं मोबाइल दिख रहे हैं हाथ में तस्वीरें लगी हुई दिख रही है पीछे।

चावल की एक ट्रे रखी हुई दिख रही है व्हाइट कलर की उसमे दाल चावल दिख रहे है जग रखा हुआ दिख रहा है दो-तीन प्लेट दिख रही है कटोरे में भी दिख रहे है चावल।

जेंट्स के फोटोज लगे हुई दिख रहे हैं वाइट कलर की चेयर दिख रही है नीचे रेड कलर की दिख रही --

पर्दे दिख रहे हैं बहोत सारे आसमानी कलर के पेंसिल कलर के पीली कलर के ब्लैक --

और दिख रहा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है प्लग लगे दिख रहे हैं | ट्यूबलाइट भी दिख रहे हैं | निचे रेड पीला कलर दिख रहा है ऊपर आसमान कलर का कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है।

पिंक कलर के जामुनी कलर के कत्थे कलर के पीले कलर के वाइट कलर के --

कत्थे कलर दिख रहा है खिड़कियां दिख रही हैं टंकी वगेरा दिख रही दिख रही हैं मकानों में।

जामुन कलर ग्रीन कलर कत्थे कलर दिख रहा है --

भी दिख रहे हैं ग्रीन कलर दिख रहा है ब्लू कलर दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है वाइट कलर दिख रहा है लाइट कलर भी दिख रही हैं पता भी दिख रहा है फू --